देखने में लग रहा है की सुबह का मौसम है । यह बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा है । दखिए एक टॉवर जैसा यहाँ कुछ बनाया गया है । पेड़- पौधे काफी ज्यादा है पानिया काफी ज्यादा आसपास का माहौल काफी शांत लग रहा है । काफी अच्छा लग रहा है ये सब देखने में । यह भी बहुत अच्छा है ।

क्या-क्या लगे हुए हैं कितने घास-फूस लग रहे हैं कितने पेड़-पौधे हैं बहुत ही लम्बे-लम्बे पेड़-पौधे हैं यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कितने अच्छा लग रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है ।

देखिये छिहत्तर बासठ चौरासी जीरो दो नब्बे एक कांटेक्ट नंबर और एक कांटेक्ट नंबर नीचे लिखा हुआ सतासी उनासी बासठ नवाषि बासठ है सताशि एक्किस बहुत प्रकार के सेव मिलते --